यहां पर कपड़ों की दुकान नजर--

और एक आदमी भी यहां पर खड़ा है जो कि--

और आस पास कुछ पेड़ लगे हुए हैं जोकि यहां पर--

यहां पर एक शिवजी की मूर्ति है।

पर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हैं।

पर बहुत थारा सामान रखा हुआ है।